शीशे के आर-पार दिख रहा है।

यह एक सैलून है जहाँ तीन आदमी हैं एक आदमी कुर्सी पे बैठा हैं तीन आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी बाल काट रहा हैं बहुत सारे फूल-ल-अ लगाए हुए हैं अंगूर फल लगाये --

सामने ही कुछ लिखा गया है डेली सर्विस अमर जातिर के प्रा लि ऐसी कुछ लिखा गया है सामने ठेला है।

बड़े- बड़े पेड़ पौधे हैं काले-काले आसमान दिख रहे हैं।

यहाँ ऑटो हैं बहुत सारे दो आदमी आ जा रहे हैं बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

डॉक्टर सफेद कलर का ड्रेस पहने हुऐ हैं टाइल्स लगा हुआ है सफेद का लाइट लगा हुआ है पंखा लगा हुआ हैं पानी बोतल हैं।

विश्व रक्त दान ऐसी कुछ लिखा गया है चौदह जून ये यहाँ हैं एक आदमी टोपी पहना हुआ।

ठंडा का दिन है।

यहाँ बहुत सारे बच्चें हैं जिनको ड्रेस दिया जा रहा हैं यहाँ बहुत सारे हरे-भरे पेड़ पौधे हैं।

यहाँ एक लेडीज झाडू लगा रही है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं छोटे-छोटे घास लगे हुए हैं बैठने का टेबल है।

यहाँ दो कप हैं जिसमे कुछ रखा हुआ हैं एक पानी बोटल हैं ब्लैक कलर का टेबल हैं रेड का पट्टी उसमे नीचे में पीछे में दिवाल हैं जो कि रेड कलर का हैं बगल में दिवाल हैं जो कि काले कलर टाइप से कुछ छपा हैं।